यह एक रूम का दृश्य है जहां पर बहुत सारे सामाने रखे हुए है।

व्हाइट कलर का दीवार है दीवार पर एक व्हाइट कलर का बोर्ड लगा हुआ है।

दीवार पर पिक्चर बना हुआ है फूल का यहां पे बहुत सारे रूम भी हैं।

यह एक फोटो का दृश्य है जहां पर कुछ आदमी अपना सामान को इधर से उधर ले जा रहा है।

यहां पे बहुत सारे पिलर भी बना हुआ है एक सामने पोल है बहुत बड़ा।

एक घर पर बहुत सारे सजावट की गई है सामने एक पोल है पोल पर बहुत सारी लाइटें लगे हुए हैं अगल बगल में पौधे हैं।

सामने एक सीढ़ी से स्टेज बना गया है।

एक चबूतरा बना हुआ वहां पे बहुत सारे आदमी हैं पेड़ लगे हुए हैं।

यह एक हटिया का दृश्य है जहां पर बहुत सारे दुकानें लगे हैं।

यह एक फोटो का दृश्य है जहां पर बहुत सारे घर बने हुए हैं।

बड़े छोटे झाड़ियां है सामने एक टावर है सामने एक बहुत बड़ा पेड़ है।

यह एक फोटो का दृश्य है जिसमें बहुत सारे साइकिल रंग बिरंगे रखे हुए--

यह एक चर्च का दृश्य है जहां पर प्रोग्राम हो रही है बहुत सारे सजावट की गए हैं।

पीछे पर्दा लगा हुआ है पर्दे पर एक सांप का फोटो झरना शिव भगवान का फोटो बना हुआ है।

आगे सामने एक पोस्टर पर लिखा हुआ है पंद्रह रुपया।

वॉल पर बहुत सारे फोटो भी बने हुए हैं जैसे पेड़ मछली।

यह एक जू का दृश्य है जहां पर दो ओस्ट्रिच है ओस्ट्रिच का रंग ब्राउन है।

यहाँ बोतल रखे हुई है बोतल का रंग पिंक है डिब्बा पर बिस्किट रखा हुआ है बगल में बाल्टी रखा हुआ है।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

अगल बगल में बहुत सारे पेड़ है छोटे छोटे पौधे लगे हुए हैं घर के सामने पोस्टर लगा हुआ है।

काउंटर पर एक आदमी बैठा हुआ है टेबल के ऊपर कैलकुलेटर रखा हुआ है तेल है शैंपू है पाउडर है।

यह एक दुकान का दृश्य है जहां पर बहुत सारे सामान रखे हुए हैं।

ये घर पर एक झंडा टंगा हुआ है छोटे छोटे पौधे भी लगे हुए हैं।

बहुत सारे अलमारी तरह का है दीवाल पर फोटो चिपका हुआ है बहुत सारी लाइटे है।